इस चित्र मे देखने के लिए अच्छा सा बड़ा सा बड़ा सा शोरूम है इधर एक लड़का यह पहन के है गॉगल पहन के--

एक लाल झाड़ है और इतरा बडे बड़े जाड़ है और आसमान एक सामने ओर एक बिल्डिंग हैं।

यहां पर एक आसमान डूब के लाल और व्हाइट दिख रहा है एक अच्छे से अच्छा एक पार्क है आदमी लोग खेल रहे है पार्क मे।

यहां पर एक और सारे मंदिर है।

इस जंगल मे वही बड़े-बड़े पथरे बन के और जंगल में ये बड़े-बड़े आदमी लोग टिकते है और इधर काला पीला रंग --

कोने में एक टेबल है और एक इधर छतरी है और एक इधर पेड़ है।

इधर एक से एक छोटा बोटल है और कांच का एक सफ़ेद ये हे गिलास और उसके ऊपर स्कूटर बाइक है और बुक्स --

पीछे हरया हलेरी है और ऊपर आसमान है।

इस चित्र में देखने के लिए एक बाटा शोरूम है और इधर ऑटो बाला हर्या आ रहा हे और वो बाटा शोरूम के में एक आदमी खड़ा है।

चित्र में देख ने के लिए यह एक बड़ा सा बड़ा मार्किट है मार्केट अंदर --

इस चित्र में देखने के लिए आसमान व्हाइट और ग्रीन है और इस बड़े से बड़े एक नद्दी है और बिच हैं।

इस चि चि चित्र में ऊपर आसमान ग्रे और व्हाइट में और पहाड़ो पूरे काले दिख रहे हैं नीचे ऑस-